जिस पिक्चर मे हम देखने के लिए बहुत बड़ा सुंदर परिवार है।

ओर इधर एक आर_टी_सी बस स्टैंड है। बस स्टैंड के पास पर्यावरण बस सु सुंदर है। और आदमी बस के लिए--